और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते है पैसे उठाने ।

एक फूल की दुकान है और यहाँ पे --

यह एक पहाड़ है और यह पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।